जहां पे कुछ लड़कियों के द्वारा कुछ डांस की--

ये किसी मंच की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर तीन बच्चों के द्वारा डांस किया जा रहा है।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

एक पेंट की दुकान है और एक लेडिस के कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे सूट्स टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

कलरफुल फूलों की माला भी टंगी हुई नजर आ रही है बहुत सारी दुकानों पे सभी मालाएं --

ये गार्डन के बीचो बीच में बना हुआ है इसके आस पास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

और एक कूलर भी रखा हुआ नजर आ रहा है दो लाल कलर की स्टूल भी रखी हुई नजर आ रही है।

बाहर की ओर कुछ लोग भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां भी लगी हुई है।

वो पहाड़ के बीच में गुफा के आगे खड़ा होकर--

यहां अंदर की और कुछ आदमी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और दो लड़कियां बाहर की ओर खड़ी हैं।

यहां पे कुछ लड़के और लड़कियां बैठे हुए मोबाइल में कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी पुरानी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जो कि गलता जी की --

फोटो है ये एक पुरानी तरह से बनी हुई जगह है।